मतलब इसे घर कहा जाता है पुरानी दिसानो मे ये घर रहती थी बहुत अच्छा लग रहा है देखने को भी।

बता रही है उनके लिए और वह देख रहे है सुन रहे है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा होगा सब लोगों को --

पीछे से कितना अच्छा लग रहा है जो टॉर्च वगैरा रखते हुए हैं उनमे से नीचे से छोटे-छोटे पेड़ पौधे बहुत दिख रहे--

अच्छा लग रहे है देखने में तो बहुत ही प्यारो सो लग रहे है।

दो लोग खड़े हुए हैं नाइट का टाइम है लाइट रंग-बिरंगी लाइटें जल रही है बाहर भी रोड पे भी लाइटें हैं।

जैसे ही तिजोरी में जो समान रहता है वह भी हम बैंक में रख सकते हैं सोना चांदी--

यह जामताड़ा है इसे जामताड़ा कहा जाता है जामताड़ा बहुत ही अच्छा स्टैट्शन है।